प्रस्तुति sampleimpress odp खोलें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
text को बदलें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
click to add notes पर click करें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
text box में type करें;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
हमने अपना पहला note बना लिया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
text चुनें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
अब font size dropdown में 18 चुनें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
notes master view दिखता है
ध्यान दें दो slides प्रदर्शित होती हैं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
slides pane से पहली slides चुनें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
character dialog box प्रदर्शित होता है
font effects टैब पर click करें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
notes पर logo logo जोड़ते हैं
चलिए त्रिकोण जोड़ते हैं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
area टैब पर click करें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
ok पर click करें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
print dialog box प्रदर्शित होता है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
tab libreoffice impress टैब चुनें
contents के अंदर:
slide name box को check करें
date and time box को check करें
original color box को check करें
print पर click करें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
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है
एक नई प्रस्तुति खोलें
notes place holder में कंटेंट जोड़ें और
एक आयत जोड़ें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
आयत को green से रंगे